जोकि यैलो कलर की टी-शर्ट पहने है रेड कलर का बैग टांगे हुए हैं और छत की सिलिंग पर नीली डिजाइन दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है कुछ गोदी में बच्चे रखे हुए हैं रंग-बिरंग कपड़े सभी लोग पहने हुए हैं और बड़ा सा गेट दिख रहा है।

यहाँ पर हम देख रहे है एक बड़ी सी नदी है नदी मे बोट है जहाज है दिखाई दे रही है बहोत सी व्यक्ति जो है सी स्नान कर रही है।